यहां पर हमें सामने एक बास्केट में बहुत सारे आलू रखे हुए दिखाई दे रहे है ब्लैक कलर का बास्केट है।

और छत पर दिखाई दे रहे हैं जहां पर पंख लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। ट्यूब लाइट भी हमें यहाँ पर अ दिखाई दे रही है जलती हुई।

जहां पर टाइल्स लगी हुई दिखाई दे रही। नीचे दो कलर में एक कथैया कलर में एक क्रीम कलर में --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

यहां पर हमें सामने एक सैलून दिखाई दे रहा है और यहां पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।

और हमें यहां पर गेट भी दिखाई दे रहा है कांच लगा हुआ और नीचे हमें पोस्टर भी लगे हुए दिख रहा है उसमें चित्र बने हुए दिखाई दे रहे है।

यहाँ पर हमें ऊपर छत पर दो व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं।

उसमें भी यहां पर लाइटिंग भी लगी हुई दिखाई दे रही है।

आ जिसमें हमें खिड़की दिखाई दे रही है। डिजाइन दिखाई दे रही है।

पीसी रखा हुआ दिखाई दे रहा है। कीबोर्ड दिखाई दे रहा है। सामने हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर हमें सामने एक बड़ी-सी फैक्ट्री दिखाई दे रही है।

और यहां पर हमें बड़े से पाइप भी लगे हुए देख रहे हैं मशीन हमें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं।

और इसमें यहाँ पर जलीयां लगी हुई दिखाई दे रही हैं। सड़क भी हमें यहां पर दिखाई दे रही हैं और यहां पर हमें एक नदी दिखाई दे रही है जिसमें पानी --

और यहाँ पर हमें एक चद्दर की छत दिखाई दे रहे हैं बोर्ड दिखाई दे रहा है छोटा सा --

यहाँ पर हमें एक अ मतलब बोर्ड लगे हुए दिखाई दे रहे है सामने --

यहाँ पर हमें सामने एक शॉप दिखाई दे रही है किताबों की यहाँ पर दो व्यक्ति बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं।

पीछे यहां पर बॉक्सेस बने हुए हैं और उसके अंदर किताबें रखे हुए हमें दिखाई दे रही है ऊपर व्हाइट कलर की छत दिखाई दे रहे हैं। लाइट --

और गेट लगे हुए दिखाई दे रहे ब्लू कलर के।